मेडिकल शॉप है जहां के पास में शिवम पैथोलॉजी लैब भी है।

अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सब अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान रखते हैं।

यहां एक फैक्ट्री हाउस लग रहा है। यहां पर फैक्ट्री में मशीन के द्वारा काम चल रहा है।

यहां पर सब अपना काम कर रहे है मशीन से।

ये दुकान भी है और कोकोकोला की दुकान भी है।

यह एक स्टोर है यहां पे सारा ग्रोसरी का सामान--

देखने में काफी सिस्टमैटिक जमा हुआ रखा है।

यहां कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं।

और दो तीन लोग बात कर रहे हैं।

कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं और साथ में एक स्कूटी भी खड़ी है।